यह ग्रोसरी शॉप है यहाँ पे सभी राशन के सामान मिलते है डेली यूज़ के भी और यहाँ पे बिस्कुट रखा हुआ है परले-जी ।

यहाँ पे सभी दूध के प्रोडक्ट मिलते हैं अच्छे क्वालिटी में सुधा के और यहाँ बहुत बड़ा है।

इस किस दोनों साइड से बाहर में सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए।

यह लहासा वूलन मेला है जो सिर्फ ठंडो के टाइम में लगता है।

अ इसके आगे का मेन गेट फूलों से सजाया हुआ है आर्टिफीसियल फूलों से।

एक बच्चा छोटा सा है रेड स्वेटर पहने हुए हैं।

एक ब्लू कलर की फोर व्हीलर लगी हुई है एक आदमी बाइक पे बैठर ने वाला ही है ।

और यहाँ खाना बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ के स्टाफ के व्यवहार बहुत अच्छा है ।

यहाँ पे क्लासरूम में बच्चे ड्राइंग कर रहे है।

के टाइम में क्राफ्ट कर रहें हैं स्कूल में दी स्कूल बंद होने से पहले।

यह पार्क है यहाँ पार्क में एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा हुआ है ।